यहां एक होटल है बहुत सारे टेबल और--

यह एक डेकोरेशन है इसमें तीन पंखा लगा हुआ है।

आयरा और लाल और उजला है।

यहां एक मंदिर है मंदिर में--

इसमें टेबुल भी है उसपे दो आदमी बैठा है दो लड़की खड़ा है।

घर की कलर लाल और कत्थे और ब्लू कलर है।